यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान है चट्टान के बीच से नहर टाइप का कुछ बना हुआ है।

यहां पर यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है यह किसी मछली बाजार का चित्र दिखाई दे रहा है जहां पर--

पुती हुई है उसके बगल में भी एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर शटर बंद है और शटर में लाल और सफेद कलर की लाइनिंग --

यहां पर ये दृश्य दिखाई दे रहा है यह हर्बलस के ऑफिस का दृश्य दि लग रहा है और जहां पर स्टील की आठ कुर्सियां रखी हुई हैं।

खेलने का बना हुआ और एक लड़का ऊपर खड़ा हुआ है जिसने काले कलर की टी शर्ट और पैंट पेहने हुए है पास ही ऑरेंज कलर का भी एक--